यहां की दीवार को सफेद रंग से पेंट किया गया है एवं नीचे बॉर्डर में लाल रंग दिया गया है।

एवं रिबन एवं झंडे के प्रयोग से सजावट की गई है।

यहां पर लाइटिंग की व्यवस्था है।

यहां पर सफेद पीले बैंगनी गुलाबी रंग के माला बने हुए फूल हैं।

पोल के ऊपर एक बॉल को भी लगाया गया है।

इसकी दीवार को पीले रंग से पेंट किया गया है।

इस होटल में कांच का प्रयोग किया गया है।

इस दृश्य में एक टोटो को भी देख रहे हैं।

एवं बच्चा व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना है।

प्लेट के ऊपर एक केला का पत्ता है जिसमें कि डोसा रखा गया है एवं कटोरी मे चटनी रखा गया है।

इसकी दीवार को सफेद एवं बैंगनी रंग से पेंट किया गया है।

यहां पे बैनर लगाया गया है जो लाल रंग का है।

एक लड़का है तो दूसरा लड़की है।

यह दृश्य एक विद्यालय का है।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

आसमान नीला एवं साफ सुथरा है।

यहां के दीवार पे इलेक्ट्सिटी जनरेट की गई है।

प्लास्टिक में कुछ फूल को भी रखा गया है।

यह एक वाटर पार्क है इस पार्क के ग्राउंड में बहुत सारे पेड़ को लगाया गया है।

दो व्यक्ति बैठा हुआ है और एक व्यक्ति दुकानदार है।